बहुत सारा सोफा और शीशा का टेबल है।

एक जगह में ब्लर करके भी है।

गेट के आगे दो ठो घर दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक साइन बोर्ड भी है।

अ बड़ ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इन लोगों ने वा अ ब्लू टी शर्ट पहना हुआ है।

हमको ये फोटो में साइबर दिखाई मिल रहा है।

रिसेप्शन का कलर ब्लू है।

यहां पर बहुत सारा आदमी घर बना रहा है।

हमको बहत बड़ा आईना दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारा साबुन भी है।

दुकान का दीवार का कलर ग्रीन है।

तीन आदमी का फेस ब्लर है।

यहां बहो बहोत सारा पेड़ है।

नदी का किनारा में बहुत सारा पेड़ है।

समने एक कैलेंडर भी है।

एक प्याज और लहसुन का बास्केट भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में एक मछली बाजार है।

या पर बहोत सारा मछली है।

यहां पर एक स्विच बॉक्स भी है।

ये फोटो में एक बैंक दिखाई दे रहा है।

बोट को रस्सी से जमीन में बंधा हुआ है।

आसमान में बादल छाया हुआ है।